गेट बनाया गया है नारियल के बहोत बड़े-बड़े पेड़ हैं और दूसरे भी पेड़ हैं।

और ये जो साइड में एक वाइट रंग का चौकन बनाया गया है उसके ऊपर एक लाल रंग का --

गेट के बाहर एक वाइट रंग की जीप खड़ी हुई है उसके बाजू के साइड में एक कार है।

कार के बाजू में दो तीन बाइक खड़ी हुवीं है उसके पीछे कि साइड में --

बाजू के साइड में पेड़ दिख रहे हैं और मैदान में भोत सारी घास आ --

सामने एक फेडरल बँक दिख रही है फेडरल बँक के उपर की साइड में एक कांच की बिल्डिंग दिख रही है आगे के--